बैंगन एक ऐसी सब्जी है एक ऐसी सब्जी है जोकि बहुत ही ज्यादा --

लेब्रेरी लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर के' --

और हमारी तबीयत खराब होती है तो उसको ठीक करा जाता है डॉक्टर एक महान इंसान --

जहाँ पर के बहुत ही दूर-दूर के इस बच्चे एग्जाम देते हैं बोर्ड एग्जाम ।

और पहाड़ों की कहीं भी और ऐसे-ऐसे फोटो खींचवा सकते हैं कि लोग देखकर डर जाएं और कंफ्यूज हो जाए कि यह क्या कर रहे हैं।

चीज है ऐसा वहीकल है जिसमें के जो कि ट्रांसपोर्ट में आता है।

जो के इंडिया में चलती है वो प्राइवेट ट्रेनें होती हैं और इधर से उधर लोगों को ले जाने में मदद करती --

मुर्गा छाप जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसको कि स्क्वायर पीपल मुर्गा छाप कुक बोलते हैं।

कुक फायर जो के एक बोहोत ही मतलब जो के नुकसान भी नहीं देता फायदे मंद --

ट्राफिक एक पोल्यूशन भी करता है और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी।

और जमाने में उसकी बेजती होती है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं वो कुछ करने --

लोग उसकी तारीफ करते हैं काफी इज्जत भी करते हैं और --

पुल पुल एक ऐसा पुल एक ऐसी चीज है।